यह पार्क का नजारा है बहुत सारे लोग पार्क मैं बैठे हुए है पेड़ के नीचे बैठने वाला पेड़ तो बहुत सारा है फुल पत्ती बहुत सारा लगा हुआ है स्ट्रीट लाइट भी है नारियल का पेड़ भी है डस्टबिन भी रखा हुआ है।